सामने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग नज़र आ रहा है जोकि सफ़द रंगे का है| बिल्डिंग के सामने बहुत सारा घास भी दिख रहा है।

नदी के साइड में बहुत सारे छोटे-छोटे घर एवं बड़े-बड़े पेड़ भी नजर आ रहा है| आसमान नीला है और सफेद मेघ से ढका हुआ है।

उसके बहार कुछ लोग भी बैठे हुए हैं चेयर में घर का दरवाजा खुला हुआ है जोकी लोहे का है| उम बड़े घर के बगल में एक घर है जो जिसमें कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है।

सामने कुछ खेत नजर आ रहा है जिसके पीछे घेरे में कुछ घर भी नजर आ रहा है।

सामने एक बहोत बड़ा बुद्ध स्टेचयू रखा गया है जो बैठा हुआ है एवं पीछे की दीवार हल्का ग्रीन कलर का है।

दुकान के छत पे कुछ पोस्टर भी लगाया हुआ है दुकान के बाहर लाइट जल रही है।

दुकान में उम ऊपर कुछ साड़ी झूल रही है और सामने कुछ गमछा रखा गया है।

तस्वीर में मंदिर का अंदर का दृश्य दिखाया गया है जहाँ पे लोटस फ्लावर के ऊपर कुछ बुद्धा स्टेचू रखा हुआ है।

दुकान देख के कपड़े का लग रहा है| दुकान के ऊपर एक पोस्टर भी टँगाया हुआ है | दुकान के अंदर कुछ साड़ी नजर आ रहा है।